यह एक एक पेट्रोल पंप की तस्वीर--

की है जहां बहोत सी नाश्ते की--

यह तस्वीर एक ऑर्केस्ट्रा की--

है जो वेडिंग स्टेज है।